इस तस्वीर में आप एक अलमारी देख सकते है जिसके बगल में दो पानी की बोतल और एक थर्मस रखा गया है।

यहाँ पे कुछ पेड़ मोजूद है| दूर में एक घर और एक लंबा टावर दिखाई दे रहा है।

ऊपर लाइटे जल रही हैं| एक व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है।